खड़े हुए है कुछ बैठे हुए है और वे पेपर से सामान बना रहे है।

एक स्कूल है जिसमे बच्चे कुछ पेपर से कुछ सामान बना रहे है आ --

लगा हुआ है और पीछे पहाड़ है और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है एक मकान भी दिख रहा है।